घर बना रहे है लोग आम आदमी लोग एक--

और बिल्डिंग का कलर व्हाइट एंड रेड मिक्स है।

और उसके सामने एक ग्रीन ला साड़ी पहन के--

येलो कलर का फूल एण्ड ग्रीन का पात ग्रीन पत्ता है।

पिछे में ग्राउंड में एक बिल्डिंग है।

और लेफ्ट साइड में कपरा जाप के रखा है।

और वॉल के ब्लैक कलर का कुछ है।

मिट्टी है ग्राउन ब्राउन है।

एंड ब्लैक कलर वाला डोर --